एगो बड़का हॉल हेय ओय में बहुत कुर्सी सब लागल हेय एमे एना ऊना हेय।

काय छिया सजायल-उज्याल हई डीजे धएल हई बहुते आ --

एगो ग्राउंड हई बड़का एमे आदमी सुतल हई।

लाल कलर के ईगो ओरो बस हई।

घर पर किछु साटल हई मोटर साई साइकिल हय ई।

आदमी जैकेट सब पेहेनले हई काउंटर हई काउंटर पर दवाई हई ।

कागज के किछो बनावे छय टेबुल पर गुड़िया-गुड़िया के कागज सब रख --

इ लइका सब गाछी रोपई छई।

गोन्ध-वोंद रखल हई कैंची-उची रखल हई।